और सामने एक करकट के घर में बहोत सारे लोग खड़े होकर--

और उस पर टाइल्स की दुकान भी लगी है उसको एक रैक पे रखा गया है।

और सामने की तरफ एक पत्थर का घर नजर दिखाई दे रहा है।

सामने लोहे के शटर पे फूल लटका हुआ नजर आ रहा है।

यहां पे एक झरना दिखाई दे रहा है जिससे पानी आ रहा है।

जो की पतले ऊपर पत्थर में से पानी निकालते हुए--

यहां पे एक बास्केटबॉल का कोट दिखाई दे रहा है।

जहां पे सिंगर कंपनी का कुछ सामान रखा गया है।